पीछे और लड़का भी शीशे में देख रहा है। और एक ने ब्लैक टीशर्ट --

ए.टी.एम. दो मशीन दिख रही है। एक पुलिस वाले अंकल दिख रहे है और कुछ लिखा हुआ पोस्टर लग रहे हुए है। एक नीचे --

एक लड़का है चेयर पे बैठा हुआ और टेबल लगी हुई है ऐ.सी लगी हुई है दो ऐ.सी लगी हुई है।

पीछे का एक डूर है। उस पे नीचे फर्श पर चटाई बिछी हुई है। एक अंकल अंदर जा रहे हैं और व्हाइट कूर --

लड़का हैं कैप ओड रखी ए बॉय की। हाथो में जूते पेन रखे ए है। पेरो में जूते पेन रखे है।

एक मास्क लगा रखा है आदमी ने और एक अरो एरेस है एक पीछे देख रहा है। एक उसके पीछे का आदमी मास्क लगाए हुए है। ब्लैक पिन्नी है उसके पास।

प्रिज्म सीमेंट का बैनर लगा हुआ है। उसके ऊपर एक और बैनर लगा हुआ है डोरी है।